आओ देख लाल पीला केतना अच्छा लागता ह तीन चार गो म् द् पान छव गो बाइको खड़ा बा। केतना बढ़िया लाग ता।